और यहां प्ले के लिए मैदान में गाड़ियां खेलने के लिए गाड़ियां लगी हैं प्ले करने के लिए एक आइसक्रीम टक ट्रक है।

दवाइयां पड़ी हैं अलमीरा में ओम की फोटो लगी है लैपटॉप पड़ा है पेन पड़ा है कुर्सी लगी है।

एक रजिस्टर रखा हैं एक टेबल हैं जिसमें कांच का फ्लॉवर पॉट रखा हैं मिरर हैं जिसमें हॉर्स का पिक्चर बना हुआ हैं।

लैपटॉप है स्विच बोर्ड लगे है बहोत से लैपटॉप साइट पे पड़े है। पेन ड्राइव की फोटो है।

बहोत सी सब टेबल और कुर्सियां दिखाई दे रही हैं ऊपर जग रखे हुएं हैं वह दरवाजा दिख रहा हैं।

एक सीढ़ीओ से रास्ता ऊपर पहुंचा रहा है जहां एक दरवाजा लगा है एक बड़ा पंखा लगा है दो तीन टेबल फैन दिखाई दे रहे--

साइड में दो दीवारे हैं अंदर एक सीट दिखाई दे रही है बड़े सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बंद गोभी दिखाई दे रही है कंदूरियों की सब्जी है मटर है।